इस तस्वीर में एक नदी है।

नदी में बहोत सारे बोट है।

एक बोट पे तीन लोग बैठे हुए हैं।

नदी के बहार बहुत सारे बड़े पेड़ है।

आसमाने बहोत सारे बादल है।

रूम में एक खिड़की भी है।

रूम के साइड में एक बड़ा सा भूसा का ढेर रखा हुआ है।

रूम में बहोत सारा समान रखा हुआ है।

रूम का दीवाल पीले कलर से रंगा हुआ है।

इस तस्वीर में बहोत सारे दुकान दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक रूम का फोटो है जिसके छत पे बहोत सारे लाइट लगी हुई है।

इसकी दीवाल व्हाइट कलर की है।

कमरा में एक बेड लगा हुआ है।

बेड पर उजले रंग का चादर बिछा हुआ हैं।

कमरा में एक कुर्सी भी रखी हुई है।

कुर्सी के सामने एक टेबल रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा हॉल है।

इस हॉल मे बहोत सारे आदमी है कुछ लेडिस है कुछ जेंट्स है।

इस तस्वीर में एक रोड है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं।

कमरा में बहोत सारी डेस्क लगी हुई है।

कमरा में बहुत सारी कुर्सियां भी है जिसका रंग लाल है।

कान की छत पर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक फंक्शन का फोटो है।

दरवाजा के ऊपर बहोत सारे फूलें लगी हुई है।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

बगीचा के सामने एक मकान बना हुआ है।

तस्वीर में बहोत सारे लोग पत्थल पर बैठे हुए हैं।

पथल के आसपास बहोत सारे लोग खड़े हैं।

पत्थल के आसपास बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

कमरा का दीवाल का रंग सफेद है।

मूर्तियों के सामने कुछ मैना बैठी हुई है।

दिख रहा है हाल के अंदर कुछ लोग खड़े हैं।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

बैठा हुआ है दुकान के दिवाल मे --

बहुत सारी रैके बनी हुई है।

दुकान के अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मकान दिख रहा है।

मकान का रंग सफेद नीला है।

मकान के सामने कुछ लोग खडे हैं मकान के अंदर --

गाड़ियां लगी हुई है मकान के पीछे कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक डीज़ल पंप दिख रहा है जिसपे बहोत सारी डीज़ल वाली मशीनें हैं।

छत में बहोत सारी लाइटें लगी हुई है बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है कुछ कार है कुछ ट्रक हैं।

ट्रेन के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है।

ट्रेन के आस पास कुछ और पटरी बनी हुई है।

ट्रेन के ऊपर से बिजली की तारे जा रही है।

सड़क पर बहोत सारे लोग पैदल चल रहे है।

सड़क पर बहोत सारी गाड़ियां भी है।

डक के आस पास बहोत सारे बड़े बड़े सारे पेड़ है।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

कमरा के अंदर दीवाल पर एक घड़ी लगी हुई है दीवाल पर एक खिड़की भी है।

इस तस्वीर में बहोत बड़ा सड़क दिख रा है।

ट्रक पर बहुत सारे आदमी खड़े है।

सड़क पर बहोत सारी गाड़ियां है कुछ बस है कुछ कारे है।

इस तस्वीर में एक कुर्सी दिख रहा है।

रखा हुआ है टेबल पर बहुत सारी फूले --

मैदान के अंदर कुछ छोटे छोटे पेड़ --

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है।

सड़क के सामने एक बड़ा सा मकान बना हुआ है।

कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई है।

इस तस्वीर में बहुत सारे बड़े बड़े मकान दिख रहे है।

बोर्ड पे इंडिया का झंडा भी बना हुआ है।

एक आदमी भी रोड पे खड़ा है।

यहां पे एक केनरा बैंक है जिसका एक ए_टी_एम भी है। जो गोपालगंज में है।

बगल मे एक रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेस भी है जहां पे एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

मैदान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

मैदान के सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

टावर के ऊपर बहुत सारी बिजली के तारे रखी हुई है।

टावर के सामने कुछ मकान बना हुआ है।

मकान के छत पर एक सिंटेक्स रखा हुआ है।

फ्लाइट के सामने बहोत सारे लोग खड़े है।

फ्लाइट का रंग उजला और नीला है।

पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे पौधे हैं।

ट्रक का रंग हरा सफेद है।

कारखाना के पीछे बहुत सारा पेड़ दिख रहा है।

बहुत सारे मूर्तियां है बहुत सारे फूल हैं।

एक दरवाजा है जिसमें ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ--

यहां पे कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो की जमीन पर बैठे हुए हैं।

एक लोहे का दरवाजा है उजले कलर की दीवाल है।

यहां पे बहोत सारी लड़कियां जमीन पे बैठी हुई है जो उजले कलर का कपड़ा पहनी हुई है।

यहां पे बहोत सारे बसें है जो पीली कलर की है।

बिल्डिंग भी दिख रहा है बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

लड़के ने काले कलर के कैप पहने हुए है।

आसपास कुछ दुकानें दिख रही है एक बंद है और एक खुली है।

यहां पे बहोत सारी मूर्तियां बनी हुई है।

बहोत सारे बिजली वाली तारे दिख रही हैं।

बहोत सारे आदमी है कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं।

पानी वाला बोतल है बहुत सारे पॉड लगे हुए है।

एक लड़की है जोकि उजले कलर का जूता पहनी हुई है उसके हाथ में एक फोन है ब्लैक जींस पहनी हुई है।

यहाँ पे बहोत सारे बल्ब दिख रहे हैं एक चेयर दिख रहा है बहोंत सारे सीट्स दिख रही हैं।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है।

सड़क पर बहोत सारे लोग खड़े हैं।

फूल के बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल है।

समुद्र पर एक ओवर ब्रिज बना हुआ है।

ब्रिज पर बहोत सारे लोग चलते हुए दिख रहे है।

इस तस्वीर मे एक घर बनता हुआ दिख रहा है।

घर की छत पे तीन आदमी खड़े हैं।

साथ में घर के छत पे बहोत सारी मशीन भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक दरवाजा है जिसके ऊपर विद्या इंस्टीट्यूट आफ इनफॉरमेशन लिखा हुआ है।

दरवाजे के सामने एक बाल्टी रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

मैदान के आस पास बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

मैदान के आसपास बहोत बड़े बड़े घर बने हुए हैं।

इस तस्वीर में एक पार्टी करने वाला जगह दिख रहा है यहां पे बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

इस पार्टी के लोग जहां पे बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक लकड़ी का बड़ा सा कुर्सी बना हुआ है।

उसी के नीचे बहुत सारी टाइल्से लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक जंगल है जिसमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है छोटे छोटे पौधे हैं और घास है।

इस तस्वीर में एक ए_टी_म है जो कि भारतीय डाक का है जिस ए_टी_म के बैनर पे ट्वेंटी फोर आवर लिखा हुआ है।

बाहर में दो बाइक दिख रही है।

एक बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग हैं जो खड़े हैं।

बहुतों ने ऑरेंज लोअर और ऑरेंज जैकेट पहेना हुआ है।

बहुतों ने मास्क पहना हुआ है।

मैदान के अंदर बहुत सा जानवर खड़ा है।

जानवर का रंग सफेद है मैदान के सामने --

कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

मैदान पर बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं।

मैदान के अंदर कुछ बिजली वाली पोल भी लगी हुई है।

तस्वीर में एक स्टेज है स्टेज के ऊपर एक बड़ी सी कुर्सी--

रखी हुई है कुर्सी का रंग लाल और --

एक बरा सा दीवाल है दीवाल का रंग सुनहरा है।

मैदान के अंदर कुछ लोग खड़े हैं।

मैदान के सामने कुछ मकान बना हुआ है।

मकान के सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में बहोत बड़ा बड़ा पत्थल दिख रहा है।

पत्थल के अंदर से एक गुफा भी जा रही है।

गुफा के सामने एक आदमी खड़ा है।

उस आदमी ने जूता जींस और जैकेट पेहना है।

और हारमोनियम पे एक कवर लगा हुआ है।